ये एक सिटी रिक्शा है जो लगा हुआ है बाहर में शोरूम के बाहर शोरूम से न्यू निकला गया है इनमें इन्हे इसमें दो चक्का पीछे और एक चक्का आगे है।

और फिर यहाँ से ही किसी और अन्य शहर के लिए रवाना होती है।

ये गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है ये सरकार के द्वारा चलाई गई बस है।

एक आदमी बस पे चढ़ रहा है बस का नाम बंदीपुर टाइगर रिज़र्व बसवे लिखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा सा गेट सामने है जिस पे लिखा हुआ है मिरचाई बाड़ी चिल्ड्रन पार्क इसका मतलब है कि यहां बच्चों के खेलने के बहुत सारे खेलने की चीज है।

खड़े हैं वह माला लेने के लिए बाहर में भीड़ लगाए हुए हैं फूल लेने के लिए भी भीड़ लगाए हुए हैं।

ये सब छत पे तीनो लड़कियां तीनो लड़कियां एक ही पोज में एक्सरसाइज कर रही है अपने वजन को घटाने के लिए।

यहां एक बिल्डिंग रेडी हो रही है और फोर व्हीलर लगी हुई है।